और दोनों ने सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पे कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं।

और बहोत बड़ी सीढ़ियां है यहाँ पर।

और हरी-हरी यहाँ पे कुछ घास भी दिखाई दे रही है सामने कुछ डलिया रखी हुई है छोटी-छोटी बकेट्स है जिनमें फ्लावर रखे हुए है।

स्टेज के ऊपर गोल्डन कलर की सोफा रखी हुई है।

और यहां पर एक पानी की बोतल रखी हुई है। कांच मे पानी का मटका दिखाई दे रहा है। पीछे कपड़े रखे हुए हैं।

और दरवाजे में अंदर के साइड पे एक इंसान खड़ा है जो बाहर आ रहा है।

और ऊपर के साइड पे कुछ लाइट के तार दिखाई दे रहे हैं। एक मकान दिख रहा है।

उसके अगल बगल बहुत सारे घने छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं। पेड़ों की पत्तियां दिखाई दे रही है और पानी बिल्कुल सफेद कलर का दिख रहा है।

और सब्जी की दुकान में टोकरियों में काफी सारी सब्जी रखी है जैसे बड़ा सा कद्दू दिखाई दे रहा है बैगन दिखाई दे रहा है टमाटर है।